ग्यारवी बरहवी निकल गयी मैं पढ़ा नही फिर भी फिर भी नहीं पढ़ा नहीं नहीं पढ़ा। समझ तू।

पिछली कुछ तरी तस्वीरों की तरह एक बार फिर हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक दम खुला हरा भरा मैदान यहाँ पे है और हमेशा देखते है --